अलग-अलग तरह के पिलो हैं ऊपर कर्टेन हैं और यहां पर इस साइड को भी कर्टेन हैं।

तो यहाँ जरूर आ सकते है और यहाँ एक खिड़की बनी है और एक गाड़ी भी है पार्किंग मे --

तो फिर यहां पर एक लेडी खड़ी है उनके साथ एक लड़की है चाइल्ड एजुकेशन दी जा रही है इनको।

देखो यहां पर ये तो ये शिमला है और ये साथ में चर्च बना--

वो है क्या बोलते कैलकुलेटर है और हनुमान की मूर्ति है और दो शीशे लगे हैं और यहां बहुत सारे सूट भी हैं।